ब्रेनच पे आराम से सामान रखा है पानी की बोतल सब कुछ बिकता है दुकानों पे गाँव में।

इसमें बड़ा ऑफिस बना हुआ है पढ़ रहे हैं पढ़ रहे है आराम से --